कोई कॉलेज दिखाई दे रहा है जिसके बाहर एक बोर्ड लगा हुवा दिखाई दे रहा है उसपे ए_डी_जोशी जूनियर कॉलेज लिखा हुआ--

कोई एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड के साइड मे ब्लैक कलर की--

यहाँ हमको एक दरवाजा दिखाई दे रहा है और नीचे यहाँ पर भी लगी हुई दे रही है और यहाँ नीचे का फर्श कुछ ऑरेंज कुछ ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमको एक रोड दिखाई दे रहा है रोड से अंदर एक गेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर गेट ब्लू कलर से पता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर एक गेट बड़ा गेट बना है।

यहाँ हमको एक जिम दिखाई दे रही है और जिम के यहाँ बहुत सारे सामान हमको दिखाई दे रहे है यहाँ पीछे व्हाइट कलर की दीवार दिखाई दे रही है जिसपे गोल-गोल कुछ--

यहाँ पर हम को एक ही खेत दिखाई दे रहा है खेत मे बहुत सारे पेड़ हमको लगे हुए दिखाई दे रहे है कुछ पेड़ यहाँ पर बैगन के भी लगे हुए दिखाई--

यहाँ हमको एक चबूतरा जैसा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर हमको बोर्ड रखा हुआ दिखाई दे रहा है ये बोर्ड हमको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।